यह एक पार्क का चित्र दिखाई दे रहा है पार्क में बहुत सारे राइड्स दिखाई दे रहे है कुछ लोग राइड्स के ऊपर उसका मजा ले रहे है कुछ लोग पानी में खेल रहे है एक आदमी के हाथ में बॉल है।

यहाँ एक पर स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है स्विमिंग पूल नीले रंग का है स्विमिंग पूल के किनारो पे एक मांजर है उसका रंग चोकलेटी है।

पहाड़ ऊँचा है पहाड़ के बीच में से एक झरना गिर रहा है बहोत अच्छा दिखाई दे रहा है पहाड़ के ऊपर कुछ पेड़ है पेड़ के पत्तियों का रंग हरा दिखाई दे रहा है।

--दिख रहे है यह बहोत बड़ा गेट दिखाई दे रहा है गेट लोहे का है उसको हरा रंग दिया गया है गेट के ऊपर दो बोर्ड लगे है।

एक आदमी घड़ी में देख रहा है बैंक के प्रवेश द्वार लोहे का है वह काले रंग का है बैंक को एक नीले रंग का बोर्ड लगा हुआ है।

दो महिलाएँ खड़ी हुई है उन्होंने अलग-अलग रंग की साड़ी पहनी हुई है कुछ परदे लगाए है।

यहाँ देख रहे है की यहाँ बहुत बड़ा स्टेज है स्टेज के ऊपर संगीत चालू है एक आदमी नाल बजा रहा है दो महिलाई है एक महिला विना बजा रही है अगल बागल में फूलों से सजाया है तीन कुर्सियां रखी है।

जेसे की आप देख रहे है ये एक मंदिर है मंदिर बहोत ऊंचा है बहोत बड़ा है मंदिर का प्रवेश द्वार बहोत बड़ा है।